मस्जिद दिख रहा है यहां पर लोग नमाज पढ़ने आते होंगे।

यह एक लोहे की मशीन है इस मशीन से ज्यादा तर छत का ढलाई होता है।

और एक मजदूर ऊपर खड़े हुए हैं एक या दो मजदूर हैं।

यह एक कैफे या रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है लेकिन यह है नहीं।

और व कुछ शीशे का गिलास रखा हुआ है।

पीछे उजले कलर का दिवाल भी है।

यहां पे बहुत सारे जंगल भी दिख रहे है यहां पे छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी होंगे।

यहां पे लोग घूमने के लिए आ सकते हैं।

यहां पे एक दो गाड़ियां भी लगाई हुई है एक दो साइकिल भी है।

यहां पे बहुत सारे दुकान और दुकानदार बैठे हुए हैं।

एक्क कराही भी दिख रही है एक बाल्टी भी है या लाल कलर का --

गाड़ी को खड़ा करने के लिए स्टील का एक सीलिंग भी है।

यहां पे एक उजले कलर का चादर भी बिछाया गया है।

कैरेट भी है इसमें कुछ सामान रखे हुए हैं यहां पे एक लोहे का चादर का छत है।

यहां पे चार कुर्सियां रखी हुई है जो चॉकलेटी कलर से रंगा गया है यहां पे एक गोल टेबुल भी है जो बहोत सुंदर लग रहा है।

एक मकान का रंग उजले कलर का है जिसमें हरे कलर शीशा लगाया गया है।

यहां पे एक दो तल्ला मकान दिख रहा है ऊपर में मकान में दुकान है एक जिसका नाम है प्रकाश टेलर ।

यहां पे लोग स्विमिंग करने आ सकते हैं पीछे गुलाबी कलर का और नारंगी कलर का बहुत ही बड़ा--